उसपे बहोत सारे मिठाई के डिब्बे फूल-उल बहोत सारे फोन उन रखें गए हैं बहोत से लोग कुर्सी पे बैठे हुए --